इस तस्वीर में एक ऊंची इमारत दिखाई दे रही है और इसी इमारत में बहुत सारे शीशे लगे नज़र आ रहे हैं।

खेत नज़र आ रहे हैं इस मेले में बहुत सारे झूले दिखाई दे रहे हैं जो कि बहुत ही रंग बरंगे से बने हुए हैं।

इन पलों में कुछ सेब है और कुछ आम है साथ ही में एक महिला नजर आ रही है और साथ में बहुत सारे--

यह तस्वीर एक निहायत खूबसूरत से शॉपिंग मॉल की लग रही है जिसमें निहायत ही खूबसूरत सी चीजें नजर आ रही हैं।